यह एक जिओ का सेवा केंद्र नजर आ रहा है एण्ड उसमें एक मोटरसाइकिल जाती हुई नजर आ रही है।

घर के सामने बच्चे हैं।

और रखी हुई है और कुछ बैनर पोस्टर लगे हुए हैं।

की तस्वीर है और यहां पर कुछ लड़कियां साइकिल की सवारी करते हुए --

तस्वीर में किसी शहर की तस्वीर नजर आ रही है।

और यह दुकान काफी अच्छी नजर आ रही है इसमें दो कुर्सियां लगी हुई हैं।